मंदिर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े गार्डन भी दिख रहे हैं।